यह एक बार्बर कि शॉप है। जहाँ --

जहा पर कि बहोत सारी पहले भी लग चुकी है।

और यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल भी उड़ती है।

जहाँ पर कि इन्होने उनके कोलौम के लिए बहुत अच्छे से इन्होने बाउंड्री कारवाई गयी है।

ये जगह देखने में बहुत ज्यादा अच्छी ल --

यह एक पहाड़ का फोटो है।

जैसे कि नीचे एक केकड़ा हो जो कि देखने मे बहुत ज्यादा ब्यूटीफूल सी लग रही है औ --

ये जिम बेसिकली फॉरआर्म्स के लिए होती हैं।

आप चाहे तो इस जगह पर आकर बहुत सारी बुक्स वगेरह अपने लिए पढ़ने के लिए ले सकते है।

कुछ ज्यादा ही तादात में यहाँ पर लोग है ये --

और बोहोत अच्छी सजावट की गयी है।

जोकि क्रिशचंस का है। देखने में तो थोड़ा बहुत नया ही लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है।

इन्होने एक पाइप को बहुत अलग डिज़ाइन से लगाया है।

और यहाँ पर बोहोत ज्यादा हरियाली भी है।

और कुछ खुली जगह भी है।

यहाँ पर बोहोत सारे लोग भी हैं।

और ये देखने मे बोहोत अच्छा लगता है।

और यहाँ पे शुतुरमुर्ग भी है।

और इसमें हमारे इंडियन फ्लैग का भी कलर भी यूज़ किया गया है।